लेफ्ट साइड के वॉल में उपर नीचे व्हाइट कलर का स्विच लगा के है।

दुकान के अन्दर में बहुत सारे सामान रखे है।

सामने में एक सफेद कलर का सोफा रखे हैं।

उस दुकान के अंदर में दो इंसान बैठके हैं।

उस सिंटेक्स के सामने में बाली रख के है।

इंसानों को चलने के लिए नाव और समुद्र के बीच एक सीढ़ी को रखा गया है।

बिल्डिंग के सामने में एक गेट है जिसके सामने में एक बाइक है।

टेबल के सामने में इंसान बैठा हुआ है जिनके हाथ में पेन है और वह कागज में कुछ लिखने कर रहे हैं।

पीछे में एक लड़की अकेली बैठी हुई है।

बहुत साले ब्लू कलर का पाइप दिखाई दे रहे हैं।

सामने में एक इंसान स्टूल में बैठे के है।

मुझे इस तस्वीर में एक यलो कलर का बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दो दरवाजे और दो खिड़की है।

जिसमें इंडिया फ्लैग का कलर का इस्तेमाल किया गया है।

यहां में बहुत सारे बच्चों के खिलौने रखा गया है।

टॉयज शॉप की दुकान में एक इंसान खड़ा हो के है।

इसमें ट्रिनिटी टॉय एंड गिफ्ट शॉप लिखी है।

यहाँ मे तीन बड़े बड़े मेरे गोल राउंड हैं।

आगे में एक इंसान फूल को काट रहा है।

के साइड में बहुत सारे चेयर रखे हैं एक इंसान ने चेयर को पकड़ा हुआ है।

जिसके सामने में एक रेड कलर का कार भी है।

मुझे इस तस्वीर में एक बड़ा सा मशीन दिखाई दे रहा है जिसका कलर रेड ब्लैक और सिल्वर कलर है।

सामने में दो इंसान खड़ा होके है।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

इसके छत के नीचे बहुत सारी इंसान खड़ा हो के है।

नीचे में फावड़ा सब भी रखे है।

वॉल के ऊपर में बहुत सारे फ्रेम लगा के है।

मुझे इस तस्वीर में क्लासरूम का व्यू दिखाई दे रहा है पीछे दीवार पर एक बड़ा सा नोटिस बोर्ड चिपका के है।